ये आपको एक टावर नज़र आ जायेगा जो की बहुत बड़ा टावर है इसके पास में आप देख सकते है इसको इलेक्ट्रिक इलेक्ट्री-सि देने के लिए एक जनरेटर की व्यवस्था की गयी है।

आप देख सकते हैं काफी पुराना मंदिर है और काफी अच्छे डिज़ाइन में इसको डाला गया है और मंदिर के ऊपर झंडा लगा है त्रिशूल लगा है।

देख सकते हैं इधर अगर आप राइट हैंड पे देखेंगे आपको एक कुआँ नज़र आएगा जो कि आज के ज़माने में खत्म हो चुके है बट --

ऊपर भगवा कलर के झंडे लगे हुए हैं और इतनी बढ़िया डिजाइन इसको डेकोरेट किया गया है आप देख सकते हैं।

आप देख सकते हैं आपको नज़र आ रहा होगा एक वोडाफोन का बैनर लगा हुआ है पास में ही अगर आप देखेंगे तान्या केयर लेडीज ब्यूटी पार्लर आपको नज़र आएगा।

इस टेंपल को आप देखिए टोटली इतना प्यार है पीछे इतनी बड़ी चट्टान है और ये महादेव का मंदिर है काफी सारे झंडे लगे हुए हैं ।

ना अच्छी लग रही है कितनी प्यारी लग रही है आप देख सकते है वन स्टेप्स फॉर योर कार एन एन्ड --

आप देख सकते है आपको एक नज़र आ जायेगी काफी बड़ी बिल्डिंग है ये कम से कम बहुत बड़ी बिल्डिंग है इसमें रूम्स भी काफी होंगे कम से कम सौ-दो सौ तो इसमें रूम होंगे।